पूजा के मंडप दिखाई दे रहा है।

यह एक झरना दिखाई दे रहा है।

और दो दुकान दिखाई दे रहा है।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

यहां पर एक शॉप दिखाई दे रहा है।

शॉप के अंदर एक लोग बैठा हुआ है।

बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है।

लोहे के न जाली दिख रहा है।

दुकान के अंदर फेवीक्विक भी दिखाई दे रहा है दुकान के सामने एक बड़ा सा सिंटेक्स रखा हुआ है।

बहुत सारा ग्रास दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है।

दो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।

छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा मिट्टी दिखाई दे रहा है।

यहां चार स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट के हाथ में एक छवि दिखाई दे रहा है।

गेट के ऊपर एन टी मॉडल हाई स्कूल कालाचीरा लिखाई दे दे रहा है।

पत्थर के बीच दो आदमी दिखाई दे रहा है।

एक वायर दिखाई दे रहा है।

दो आदमी सर्विसिंग कर रहे हैं।

दिखाई दे रहा है सर्विसिंग के अंदर दो लाइट लगा हुआ है।

दो वायर दिखाई दे रहा है।

दुकान के ठीक सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यह एक टैंक खड़े हुए हैं।

दो बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है।

दुकान के अन्दर बहुत सारा टाइल्स दिखाई दे रहा है।